यह एक उद्योग प्रशिक्षण केंद्र आ ई.टी.आई. बनाई हुई है।

रोड है रोड के ऊपर एक साइकिल ठीक करता हुआ एक मैकेनिक बैठा हुआ है।

के अंदर कुछ अ किताबें अलग-अलग कॉलम अलग-अलग रैक में रखी हुई है। यह सभी--

एक अ आई.टी.आई. है। ये आई.टी.आई. गोरमेंट से रिलेटेड है।